किसी आयोजन से होगा शायद बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुन्दर है बढिया है ।

अच्छा है मजार जगह है बहुत ही अच्छा है।

बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा बहुत ही बढिया है ।

इतना अच्छा कितना सुन्दर घर सजाने वाला ये चादरा है बहोत ही अच्छा बहोत ही बढ़िया बहोत ही सुन्दर है।

वाओ कितना अच्छा गोट है।

इतना लम्बा-लम्बा पैर इसका बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढियां।

एक लाइट पीकॉक है जो लाइट सब जल रहा है बोहत ही अच्छा बहुत ही सुंदर हुए है।

बहुत ही सुन्दर है वो --

आदमी भी आ रहे है जा रहे है।

फिसलने का मशीन है बच्चा खेलता है कूदता है।

बहुत ही अच्छा कैंटीन है जो की साफ सुथरा टेबल भी है कुर्सी भी है ।

क्यूट जगह हैअच्छा है सूंदर है ।

बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा है बहुत ही बढ़िया है ।

कितना अच्छा है पेड़ भी है ।